देखिये गाइस ये हरा-भरा पेड़ है यहां पे देखिये बकरी लोग है बगल में आसपास में गांव है सुंदर उंदर गांव देखिये आसमान का कलर नीला है पूरा ए वातावरण भी बढ़िया है।